टंगी हुई है पीछे की तरफ एक पवन चक्की दिखाई दे रही है और सारे आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

लिखा हुआ है और पीछे की तरफ एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है और ग्राउंड में --

बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है और पीछे की तरफ पाहाड़ी दिखाई दे रही है जिसमे छोटे छोटे से --

हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे है और उपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में चारो तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है बर्फ के उपर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में एक बस दिखाई दे रही है जिसने डब्लू डब्लू डॉट जैन ए जैन एक्स्प्रेस डॉट इन लिखा हुआ है बस की --